उसके आस-पास काफी सारी बतखें मौजूद है और वह मूर्ति पत्थर से बनाई गयी है।

जिसकी एंट्रेस पे हम काफी सारी साइकिलें और बाईकों को खड़ा हुआ देख सकते हैं।

उसके अगल-बगल टीन से बनी हुई दीवारे हैं सामने एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तस्वीर में कोई भी व्यक्ति नहीं है।

जिसकी एंट्रेन्स पे हमें नीले और सफ़ेद गुब्बारों की सजावट देखने को मिलती है।

इस तस्वीर में हम एक स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड होता हुआ देख सकते हैं।

उसके ऊपर से एक बस गुज़र रही है। वह बस सफेद और नीले रंग की है।

इसके ऊपर एक टेबल है और उसपे गमले रखे हुए हैं।

उसके ठीक बगल में एक लाइट वाला लैंप लगा हुआ है और लाइन से एक लाइन में पेड़स लगे हुए हैं।

साइड में हम एक एडवरटाइजमेन्ट का बड़ा-सा बोर्ड देख सकते हैं और उसके ठीक आगे एक व्रक्ष भी लगा हुआ --

इस तस्वीर में सामने हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ है।

उन दोनों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई है।